और यहाँ बहुत सारी औरतें खड़ी दिखाई दे रही है। औरतों ने यहाँ पर बहुत सारी सॉल लपटे हुए नजर आ रहा है। साल का कलर हमें कथ्य दिखाई दे रहा है। और सफेद नजर आ रहा है। और यहाँ हमें बहुत ही बड़ा घर दिखाई दे रहा है।

आत करो जिंदगी बदल जाएगी नई शुरूआत का सही।

और हमें यहाँ पर पानी की टंकी दिखाई दे रही है और वहाँ पर हमें बहुत सारे लोग पानी पिते हुए नजर आ रहे है और बहुत सारे लोग इधर-उधर जाते हुए दिखाई दे रहे है।

बहुत ही बड़ा ग्राउंड दिखाई दे रहा है जिसमें की बहुत सारा झण्डे गड़े हुए दिखाई दे रहे है जो की खम्भे के तरह नजर आ रहे है।

बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग में हमें बहुत सारे कांच लगे हुए दिखाई दे रहे है और नीचे हमें एक बैंक की शाखा दिखाई दे रही है जो की लाल कलर के बोर्ड के साथ नजर आ रही है।

और हमें यहाँ पर बच्चों ने काले कपड़े पहनें हुए दिखाई दे रहे है और हमें यहाँ पर बहुत सारा फर्नीचर का समान दिखाई दे रहा है जो की टेबल नजर आ रहा है और हमें यहाँ बहुत सारे मेकअप का मटेरियल दिखाई दे रहा है।

ये एक आदमी की मदद करता हुआ नजर आ रहा है। और हमें यहाँ पर बहुत सारे गोले लगे हुए दिखाई दे रहे है। एक आदमी की पीठ--

एक फूलदान दिखाई दे रहा है। जो की पिले कलर के नजर आ रहे है। और हमे ऑपरेट टेबल टेबल दिखाई दे रहा है। टेबल पे एक आदमी लेटा हुआ नज़र और रहा। और एक आदमी हाथ मशीन लिए खड़ा दिखाई दे रहा है। जो की बह--